यहाँ पर कुछ लोग ऊपर दिखाई दे रहा है। नीचे गार्डन नजर आ रहा है। गार्डन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। गार्डन काफी हारा भरा नजर आ रहा है। गार्डन मे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

नजर आ रहा है जंगल मे काफी सारा धुआ दिखाई दे रहा है यहा पे शायद आग लगी नजर आ रही है।

पानी का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है यहा पे काफी सारे पत्थर नजर आ रहे नीचे पानी बहता नजर आ रहा है ऊपर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे पेड़ काफी हरे भरे नजर आ रहे।

पानी की टंकी पर प्लास्टो लिखा हुआ है। पानी की टंकी सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ पाइप नजर आ रहे है कुछ रेलिंग दिखाई दे रही है। यहा पर कुछ गेट नजर आ रहे है पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे--

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर गुलाबी नजर आ रहा है बिल्डिंग के उपर एक बोर्ड लगा है बोर्ड पर आयकर भवन लिखा हुआ है बिल्डिंग मे काफी सारे ए_सी दिखाई दे रहे है बिल्डिंग मे काफी सारी खिडकीया नजर आ रही--